मस्जिद के पीछा एक केला बगान है जो की बहुत ही अच्छे लग रहें हैं देखने में किला के साइड में ग्राउंड है ग्राउंड बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में ढेर सारे मकान --

एक बहोत ही बड़ा नदी है नदी में ढेर सारे पानी है नदी क में ढेर सारे गाछ-वृक्ष हैं साइड में बहोत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में।

कार जो की बहुत ही अच्छे लग रहें हैं काला मॉडल वाइट मॉडल में हैं उसके साइड में एक रोड है रोड बहुत ही अच्छे लग रहें हैं।

जो की रोड के साइड में एक मस्जिद दिखाई दे रहा है मस्जिद वाईट कलर में है बहोत ही बड़ा है मस्जिद के साइड में ढेर सारे मकान हैं जो की बहोत ही अच्छे लगते हैं देखने --